प्लांट्स भी लगे हुए लाइट के फोकस भी यहां पे दिख रहे हैं।

और यहां पे ये छह ब बियर के बॉटल्स रखे गए हैं बाजू--

बड़ी ही बाउंड्री खींची गई है --

नीचे काम कर रहे हैं जाली मारी गई है यहां पे कंक्रीट सिरमिट की--

बैठा हुआ है यहां पे एक आदमी बैठा हुआ है।